एक डिजाइन किया हुआ है जिसका कलर बिल्कुल नहीं है इसीलिए बहुत पुराना लग रहा है पीछे पेड़ पौधे भी है निशान में पानी का कुछ है।

कॉफी कप हैं ह नीचे क मिट्टी का कप हैं बहुत सब प्रदीप मिट्टी का प्रदीप हैं बहुत कुछ--

फोटो एक पार्क की है जहाँ पार्क मे बहुत सारा मूर्ति रखा हुआ है।

सायद टी_वी_एस का शोरूम है बहुत सारे टी_वी_एस के स्कूटी खड़ा हुआ है।

फोटो में हमे एक गांधीजी का स्टाचू दिख रहा है और पीछे इंडियन फ्लैग का फोटो है।